का जो है दृश्य कितना सुंदर है कितना अ ही तृप्त है बहुत ही सुंदर लग रहे है मेरे भाई मेरे बड़े भैया बहुत ही बहुत ही जो यहाँ पे खड़े है पीछे का जो नज़ारा है।

ये लोग अ दवाइयाँ अ लेने आए है ये लोग को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अ हित हीन का कार्य किया जाता है।

अब का बताऊ इनका जो दृश्य है इनका जो गाड़ी धोने का स्टाइल है बहुत ही अच्छा है बहुत सुंदर है इनके पास जो गाड़ी धुलवाने --

आप देख सकते है एक एक सर है जो कि छोटे-छोटे नन्हें-मुन्हे बच्चो को पढ़ाई करवा रहे है वहाँ पे एक बगल में एक सिस्टर खड़ी है वो भी बहुत अ नेक दिल की वाली नेक दिल वाली इंसान है।

सेफ़्टी से काम किया जाता है अगर सेफ़्टी से काम नहीं करेंगे तो जो यहाँ का जो सूपर्वाइज़र हैवो अपना गेट पास लेने के बाद भी गेट पास देके ।

यहाँ पे आप देख सकते है की काफि ज्यादा संख्या में भीड़ इक्कठा हुआ है। फिर भी हम क्या कहे वहाँ का जो नजारा है। काफी सुन्दर लग रहा है। वहाँ पे आप देख सकते है ऊपर में आसमान का रंग बिरंगे--

यहँ हम देख सकते हैं की छठ एवं कार्तिक पुर्णमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है।

देख सकते हैं भाइयों यहाँ फैक्ट्री है। फैक्ट्री में अ कुछ अ बनाने का कार्य हो रहा है। इस फैक्ट्री में मेरे ख्याल से प्रदूषण का प्रयोगशीट हुआ जा रहा है। यहाँ पे--

देखा जाये की माता रानी जो है दुर्गा पूजन का कार्य हो रहा है। यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य होता है। यहाँ साल में एक बार माँ दुर्गा पूजा का--

यहाँ पे देखा जाये की अ छोटे-छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। अअपना स्वादिष्ट वाला धर्ष का कार्य कर रहे है। कार्य करने के लिए अपना नेकी दिल का इंसान का प्रेप्सिम काम काम करते है।